अमृतसर में और बंगला साहेब में ऐसा गुरुद्वारा देखने को मिलता है।

यह काफी सुंदर लग रहा है।

यह एक डॉक्टर मोहित का आयुर्वेदिक क्लीनिक है।

बहोत सुंदर टेबल है कुर्सियां हैं।

यह एक होटल है जिसमें एक घड़ा है दीवार घड़ा।

बहोत सारे पेड़ है रात का समय है गाड़ियां खड़ी है ढाबा--

जिसमें बहोत सारे पंखे हैं बहोत सारी टेबल है।

टाइड के यहां पर लाइटे है और बिल्कुल सफाई है।

घास है। चारों तरफ नीम के पेड़ --